यहाँ देखिए बहुत अच्छा फ्लॉवर ई फूल सब लग रहा है ई कौन ई है पता है मुझे नहीं पता है बहुत अच्छा लग रहा है| मुझे देखने में बहुत सुंदर है एक नंबर व्यू आएगा | यहाँ फोटो - ऑटो खिचाने के लिए एक नंबर है।

यह एक गैरेज नजर आ रहा है जहाँ कुछ गाड़ियां नजर आ रही है टूटी हुई गाड़ियों की यहाँ मरम्मत की जा रही है।

यह एक मदर्सा सा नज़र आ रहा है यह मदर्सा कुछ आधुनिक सा लग रहा है जो काफी सुन्दर एंड साफ़-सुथरा है।

उनके पीछे कुछ नामचीन हस्तिया खड़ी है शायद इन्हें कुछ पुरस्कार वगेरा मिलेगा|

यह एक मंदिर है जो बहुत ही पुराना मंदिर नजर आ रहा है।

जहाँ काफी संख्या में लेडिज जेन्ट्स डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।